यहाँ पे गेट भी है। गेट के अंदर एस.बी.आई. बैंक है और बैंक में बोहोत अच्छे से लोग --

यह एक हेयर कटिंग का दुकान हैं जहाॅं पर व्यक्ति पीछे मोबाइल लेकर अगले व्यक्ति की हेयर काटकर फोटो खींच रहे हैं। यहाॅं पर बोर्ड हैं और क्रीम --